जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ एक छज्जे का निर्माण हो रहा है और छच्चे के निर्माण कार्य कर्ता मे बहुत सारे मजदूरों का यूस होता है।

प्या या फिर कार हो गया। ये जाहिर है की लोग जेसी में से आएंगे ओर अपना एकाउंट हो गया फिर उससे रिलेटेड कोई भी बात है उसको पूछने के लिए उसको बताने के लिए यहां पे यूज़ करेंगे वो लोग।

और ये आपस मे बहुत ही अपने आप ने आपको बौद्धिक विकास अपने आपको स्मार्ट भी बना रहे हैं ताकि इन लोग को लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाले आदमी हैं कॉलेज लाइफ में --

वृक्ष से इसकी तस्वीर ली गई है और इस वृक्ष की भी तस्वीर इसमे आ गई है तो अर्थात कहने का मतलब यही है कि कोई भी घर बनता कोई भी अपार्टमेंट बनता है तो सबसे पहले वहाँ ग्रीनरी बहुत जरूरी है।

तीन दिखाई देते हैं और एक नहीं दिखाई देता है और यह सारनाथ में स्थित है और यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका चित्र जो है कितना मनमोहक कितना दार्शनिक लग रहा है और दो महिला पुरुष आपस में बातें भी कर रहे हैं कि कैसे यह बना हुआ होगा।

इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इस बैंक के लिए कितने लोग दूर-दूर से लाइन लगाके खड़े रहते हैं। आपस से बात करते रहते हैं कि कैसे हम लोग यूको बैंक और जैसे ए.टी.एम. की सुविधा यही होती है कि ए.टी.एम. चौबीस घंटे के लिए खुला रह जाता है ऐसा नहीं है कि एक घंटे के लिए खुला है।

वहां इनको बड़ा ही आनंद आता है। लोग हंसते हैं खेलते हैं अपनी फोटो खिंचवाते हैं और इसका आनंद लेते हैं और आनंद लेते लेते फिर से वापस घर चले जाते हैं बढ़िया से।